नमस्कार दोस्तों more on redirection पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम कुछ उदाहरणो की मदद से standard error और output
दोनों का redirection और
redirected output को जोडना सीखेंगे
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको bash में shell scripting का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system
gnu bash version 42
कृपया ध्यान दें gnu bash version 4 या उपरोक्त अभ्यास के लिए अनुशंसित है
पिछले tutorial में हमने standard output और standard errors के बारे में सीखा
stderr और साथ ही stdout दोनोें को एक file पर redirect किया जा सकता हैं
यह कई तरीकों से किया जा सकता है
इस tutorial में हम redirections के दो अतिमहत्वपूर्ण मेथड को cover करेंगे
standard output और error दोनों को redirect करने के लिए पहली विधि है &> ampersand के बाद greaterthan चिन्ह का उपयोग करना
syntax हैः command space ampersand greater than space फाइल का नाम
मैं redirect sh file खोलती हूँ
मैंने इस file में कुछ code टाइप किया है
यह shebang line है
ls 2 directory के directory कंटेंट को सूचीबद्ध करता है अर्थात /usr और /user
ध्यान दें कि /user directory मौजूद नहीं है
इसलिए command ls एक error को दर्शाएगा
& ampersand के बाद greater than stdout और stderr को out _ underscore file txt में redirect करेगा
अब file को सेव करें
file redirect sh को रन करते हैं
अपने keyboard पर क्रमानुसार ctrl + alt + t कीज का उपयोग करके terminal खोलें
type करेंः chmod space plus x space redirect dot sh
enter दबाएँ
type करें dot slash redirect dot sh
enter दबाएँ
हम out _ underscore file dot txt खोलकर output देख सकते हैं
type करेंः cat space out _ underscore file dot txt
हम error और output दोनों को देख सकते हैं
directory /user के लिए error इस file में दर्ज हो गई है
यह दर्शाता है कि यहाँ कोई /user directory नहीं पायी गयी थी
/usr के लिए directory कंटेंट प्रदर्शित होता है
कृपया ध्यान दें हमारे system पर /usr directory के लिए कंटेंट भिन्न हो सकता है
अब इस file को डिलीट करते हैं अतः terminal पर type करें rm space out _ underscore file dot txt
अन्य method है फाइल नाम के बाद 2 greater than ampersand 1 का उपयोग करना
syntax है command space greater than फाइल का नाम space 2 greater than ampersand 1
हम slash dev slash null /dev/null file में भी redirect कर सकते हैं
slash dev slash null /dev/null file के बारे में और सीखते हैं
यह एक विशेष प्रकार की फ़ाइल है
यह एक नल फ़ाइल या एक ऐसा स्थान है जहां dump कुछ भी रख कर सकते हैं
इसमें output और error messages शामिल हैं
इसे bit bucket भी कहा जाता है
अब gedit में अपने code पर वापस आते हैं
अब null file में standard output और error दोनों को redirect करते हैं
मैं code की इस line को copy करूँगी और इसे यहाँ नीचे paste करूँगी
मैं output और error messages दोनों को अलग करना चाहती हूँ
अतः मैं copied code के इस भाग को बदलूँगी > greater than अर्थात truncate or write
slash dev slash null नल file है 2> & 1 2 greater than ampersand 1
number 2 standard error को standard output में number 1 से चिह्नित करके redirect करेगा
अब save पर click करें code को सेव करें
file redirect sh को रन करें
terminal पर जाएँ
uparrow की के द्वारा पिछली command को रिक़ॉल करें dot slash redirect sh और enter दबाएँ
हम cat out _ underscore file dot txt टाइप करके output देख सकते हैं
अपनी slides पर वापस आएँ
हम एक file के लिए standard output या error को संलग्न करने के साथसाथ capture कर सकते हैं
output या error फाइल के अंत में संलग्न हो जायेंगी
यदि file मौजूद नहीं है यह नयी file बनायेगा
syntax हैः command space greater than greater than space के बाद फाइल का नाम
इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं
मैं file redirect dot sh खोलती हूँ
अब यहाँ type करेंः date space greater than greater than space out _ underscore file dot txt
date command output के रूप में साधारणतः system की तिथि को प्रदर्शित करेगा
हम इस command को terminal पर date टाइप करके जाँच सकते हैं
terminal पर आएँ type करें date आप system की तिथि को देख सकते हैं अर्थात वर्तमान तिथि प्रदर्शित होती है
date command का output out _ underscore file dot txt फाइल में संलग्न होगा
हम इस file का उपयोग ls command के standard output और error को capture करने के लिए कर रहे हैं
save पर click करें
टर्मिनल पर जाएँ
uparrow की दबाएँ पिछली command dot slash redirect dot sh को recall करें
और enter दबाएँ
out _ underscore file dot txt को खोलकर output देखते हैं
type करेंः cat space out _ underscore file dot txt
ध्यान दें कि date command का output file के अंत में संलग्न है
यह हमें tutorial के अंत में पहुँचाता है
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
standard error और output दोनोें का redirection और रिडाइरेक्टेड output को संलग्न करना
नियतकार्य के रूप में
कुछ कंटेंट के साथ x _ underscore file dot txt file बनाएँ
out _ underscore file dot txt और x _ underscore file dot txt दोनोें के कंटेंट को नई file में redirect करें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
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
इस script को fossee और spoken tutorial टीमों द्वारा तैयार किया गया है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद